ई बादल नजर आ रहा है जिसमे वाइट नीला फिरोजी कलर का दिखाई दे रहा हैं दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिसने वाइट कलर और काले कलर की --

एक दो तीन और पानी कि टंकी नजर आरही है घर नजर आ रहा है उपर बदल नजर आ रहा है वैट और आसमानी कलर का घास नहर आ रहा --

एक रोड नज़र आ रहा है रोड में बहुत सारे व्यक्ति नज़र आ रहे है जिसमे वाइट और काले कलर की गाड़ी खड़ी है पिले कलर की गाड़ी खड़ी है एक आदमी खड़ा है।

इसमें एक का झुंड रखा हुआ हैं इसमें कुछ दिखाई दे रहा है इसमें जाली लगी है पि --

ये एक किचन है किचन का नजर आ रहे है जिसमे नीछे बहुत सारे केक नज़र आ रहे हैं।